ईं तस्वीर मा जु छा हम देख सक्दों कि यखम हम ते एक ढोकरु करा दिखेणु और ढोकरा का फंडे हम देख सक्दों हम ते कुछ डाला भी छन दिखेणा।

और झील का फंडे हम ते पहाड़ छन दिखेणा लग्यां और पहाड़ों पर सड़की भी छन बणी और पहाड़ों पर बहोत सारा डाला - पुरता भी छन लग्यां।

झील का किनारा मा जी बोट भी छन खड़ी होईं बहोत सारी और वखम झील तक जाणा खातिर बाटु भी छ बणायु और किनारा बिटि हम ते सुखी जमीन दिखेणी जखि बहोत सारु कुड़ा भी दिखेणु।